पीली कलर की एक बोट आ है रेड कलर की है बोहोत सारे झंडे लाइट वागेरा भी लगे हुए है।

और बाँटू थी हासे बाकी सब बोहोत सारे लोग यहा पर बैठे हुए है एक फन भी दिख रहा है सामने एक ट्यूबलाइट लागि हुई है।